ये कोई जागरण हो रहा है कहीं पे जहां पे माता रानी की उम स्वरूप सब रुप को रखा गया और एक लेडी --

और ब्लैक कलर के पत्थरस दिखाई दे रहे हैं बहुत सारी डक आसपास में है और एक झील सी दिखाई दे रही है ।

आस पास में ग्रीनीश नजर आ रही है कुछ लोग यहां पे खड़े हुए हैं झील की तरफ देख रहे--

अह लोग वर्कस वर्कर्स काम कर रहे हैं ईट--

और बहोत सारे पंखे भी दिखाई दे रहे हैं आस पास में सीनिरीज वगैरा भी लगी हुई है।

कि ऑफिस टाइप लग रहा है या क्लिनिक टाइप लग रहा है जिसके अंदर सामने एक सिनेरि नजर आ रही है आधा टेबल दिखाई दे रहा है और आधी चेयर दिखाई दे रही है ।

और कुछ लोगो दिखाई दे रहे हैं चलते फिरते कुछ लोग खड़े हुए हैं और आसपास में हरियाली भी नजर आ रही है और सूखियां पत्तियां भी ।

ये कुछ ऐसी जगह नजर आ रही है जैसे अ कुछ लेडीज एक दूसरे के साथ मिलके कुछ मीटिंग करके उसके बाद पिक वगेरा निकाल रही हैं ।

ये कुछ सर्विस शोप जैसा दिखाई दे रहा है जहां पे अलग-अलग साइज के टायर्स पड़े हुए हैं टंबल्स पड़े हुए हैं ।

अ कपड़े का ग्रीन कलर का और बहुत सारी चीजें ।

अ मुझे चेयर्स दिखाई दे रही हैं और स्टेज भी है और यहां पे --

टेबल भी लगे हुए हैं और दो लोग खड़े हुए हैं ।

और सोसाइटी भी लिखा हुआ है किसी गांव का पिंड का लग रहा है मुझे।

एक आदमी यहां पे सर्विस कर रहा है जो वो अ उ खड़ा हुआ है गाड़ी के पास और उसको चेक कर रहा है ।

यह देखने में कुछ ऐसी जगह दिखाई दे रही है जहां पे एक उम उम उम बंदा प्यानो लेके बैठा हुआ है और प्यानो --

यह कुछ ट्रांसलेशम एरिया दिखाई दे रहा है कोई फैक्ट्री दिखाई दे रही है कोयले वगैरा जैसी जिसमें बहुत सारा कोला भरा हुआ दिखाई दे रहा है साथ में खाली--

अ बॉक्सेस भीं दिखाई दे रहें हैं यहाँ पे व्हाइट कलर के पॅकेट्स भीं पड़े हैं पिलर पे भीं ब्लॅक ब्लॅक कलर की वगैरा नजर आ रहीं हैं।

काफी बॉटल्स वगैरा कैन वगेरा खाली कैन पड़े हुए हैं ।

अ ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं ऊपर की तरफ बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं कर्टेन दिखाई दे रहे हैं ।

बलुन्स है वाइट बलुन्स है ग्रीन बलुन्स है ।

अह जिस पे लिखा हुआ है व्हीट ग्रास जूस यही कोई जूस की दुकान है ग्रीनस जूस की दुकान है ग्रास वगैरह यहां पे तैयार की जाती है आर्टिफिशियल --

हो सकता है कि यहां पे एक बाइक के उप अ बॉक्स टेबल के पास मुझे पाइनएप्पल दिखाई दे रह है ।

ये जो है किसी मंदिर गुरुद्वारा टाइप या कोई किसी का पुराना घर जैसा नजर आ रहा है जैसे किसी जगह का पुराना एरिया हो ।

और ऊपर की तरफ बिजली की तारें निकल रही हैं ।

समान कैंडीज वगैरह दिखाई दे रही हैं एक--

जहां जो सिखों की पहचान है और ख गुरुद्वारे में अभी इस वक्त कोई दिखाई नहीं दे रहे है ।